ये किसी ऑफिस की पिक है जहां टेबील पे सिस्टम रखा हुआ है चेयर बीछी हुई है साइड में--

और ये साइड में कुछ बैग वगैरह रखे हैं काउंटर पर--

झिंगा मच्छी यहाँ पर रखी हुई है तीन-चार--

टोकरी में झिंगा मच्छी रख कर यहाँ रखी है लोगो ने--

ये रेत का बड़ा टीला है जिस पर तीन चार लोग बैठे हुए हैं लेटे हुए हैं जैसा कर रहे हैं।

और ये डाल लगी हुई है हरियाली दिखाई दे रही है पीछे इसके--

ये कोई एच_पी_ का पेट्रोल पंप है जो सबसे अंदर जाकर लोगों ने व् पिक्चर ली है एंड यहाँ पर अपलोड कि है।

और एक बालकनी में प्रवेश कर रहा है।

इसमें कुछ-कुछ दिखाई दे रहा है कुछ कुछ नहीं एक टंकी भी रखी हुई है।